बड़ी कांच की मिठाइयों का डब्बा बना हुआ है ये जिसके अंदर कई तरह की मिठाईयाँ रखी हुई हैं।

अ जलेबियाँ रखी हैं मोतीचूर के लड्डू रखे हुए पेड़े रखे हुए हैं कई तरह के चीजे रखी हुई हैं सब पे न्यूज पेपर बिछे हुए हैं बड़ी-बड़ी एल्युमियम की पराते हैं।

अ साइड से कुछ दो अ औरतो की मूर्तियाॅं बनी हैं। एक शेर दिखाई दे रहा है।

एक बहोत बड़ी दुकान है जिस पे लिखा है सरस्वती पुस्तक भंडार फोटो स- स्टेट और लेमिनेशन .

एवंम इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध है उसके ऊपर एक वेलकम लिखा हुआ है अंदर बहोत सारी कॉपी किताबें रखी हुई हैं। बाहर कुछ मेगज़ीन्स अ लटकी हुई हैं। टेबल --

अ कुछ लोग बाते कर रहे है एक ऑटो दिखाई दे रहा है अ एक गुंबत दिखाई दे रहा है जो --